इस फोटो मे आप देख सकते हैं आपको एक अ नदी नजर आ रही --

जहाँ आप देख सकते हैं यह ट्रेन खड़ी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ आपको लाइट के थमबे नज़र आ रहे हैं।

इस फोटो में आप देख सकते हैं आप को एक ग्राउन्ड नजर आ रहा है। जहाँ आप देख सकते हैं आपको दो लोग मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में आप देख सकते हैं | आपको कुछ बल्लियों के ऊपर एक मोर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है ।

जो कि अ काले रंग का अ लाइट काले रंग का नज़र आ रहा है। ये मगरमच्छ आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको पानी भी नज़र आ रहा है।

आप केक पर देख सकते हैं यहां पे चॉकलेट बिस्किट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।